जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे दो लोग खड़े हुए है उसमें एक आदमी है एक औरत है।

लाइट जैसा कुछ लगा हुआ है साथ ही में लाइट कलर की भी लाइट और ब्लू कलर की भी लाइट है।

ये सब दिखा रहा है कुछ-कुछ सब्जियां बोरियों में भी रखी हुई हैं।

यहां पे एक बाइक भी खड़ी हुई है वो काले कलर की दिख रही है।

ऐसा लग रहा है जैसे यहां पे किसी पकवान को कहीं पे ले जाया जा रहा है किसी --

जैसा की हम देख पा रहे है यह एक स्टेज का दृस्य है यहां पे कई लोग परफ़ॉर्म --

उसके ऊपर हमे बैल गाबी टू दाहड़वाड़ भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

के ऊपर नीचे जो कार्पेट बिछा हुआ है वो ग्रीन कलर का है यहाँ पे --

वही जैसे की कोई ऐडवरटाइजमैंट का फोटो लगा हुआ है।

सोफे का जो कलर है हमे लाल और सफ़ेद कलर का दिखा रहा है।

यह जो दिल है वो फूलों से बने हुए है।

घर का जो कलर है हमें सफेद कलर का दिख रहा है।

यहां पे हमें एक चेयर दिखाई दे रही है जो ब्राउन कलर की है।

कपबोर्ड भी दिख रहा है ये बच्चों के कपड़ों के लिए का कपबोर्ड है।

यहां पर ऊपर छत जो है वो वाइट कलर की दिख रही हैं।

यहां पे एक काफी बड़ा झरना दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हमे जो दीवाल है व्हाइट कलर की दिख रही है यहां --